यहाँ पे मुझे पानी बहुत सारा दिखाई दे रहा है जोकी बहुत ही सुंदर लग रहा है पानी का कलर भी अच्छा दिखाई दे रहा है जोकी डार्क ब्लू दिख रहा है।

यहा पे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके आसपास मुझे पहाड़ पेड़ दिखाई दे रहे यहा पे मुझे थोड़ा खाली मैदान भी दिखाई दे रहा जहा मुझे मास मौसम भी दिखाई दी अच्छा साफ दिखाई दे रहा है।